एक बेंच है बेंच पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पार्क में पेड़ दिख रहा है और बिल्डिंगे दिखाई दे रहा है पार्क में हरी हरी घा --

पौधा दिख रहा है और जाली से घेरा गया है और जाली के उस पार पेड़ दिखाई दे रहा है बिल्डि--

और ओ जोखने वाला जो होता है तराजू पे रख के जोखा जाता है वो दिख रहा है बाल्टी दिख रहा है बाइक दिख रहा है।

और समुद्र के किनारे पत्थर उथर दिखाई दे रहा है।

ये एक ढाबा है जिस पर लिखा गया देव भोग सुद्ध भोजनालय स्पेशल दही की मिठ्ठी लस्सी सुद्ध देसी मक्खन के साथ तंदूरी मसाला आलू प्याज--

और बगल में दुकान है कुरकुरे टांगा गया है और डिब्बे में सब रखा गया है पेड़ दिख रहा है सामने।

लिखा गया है सत्यम पथरी सेंटर ऑपरेशन और बिना ऑपरेशन के हर प्रकार की पथरी का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा पता कॉलोनी रोड छज्जन मोबाइल नंबर दो लिखा गया और--

सांस लगा हुआ है पर्दा दिखाई दे रहा है और सत्यम पथरी सेंटर के सामने बहुत से तार दिखाई दे रहा है पीछे भी तार दिख रहा है और आसमान दिख रहा है।

एक्सबिन का कलर चॉकलेटी है और सामने जो मरून कलर का--

कलर में है उसकी परछाई पानी में दिख रही है आसमान की बहुत सी पेड़ दिखाई दे रहे।

एक आदमी फोन पर बात कर रहा है जैकेट पहना हुआ है एक आदमी बगल में खड़ा हुआ है जे--